यह एक मॉल का फोटो है।

और पीछे ख़्यामल संस द सारी शॉप करके बोर्ड लगा हुआ है।

और पीछे की तरफ टेंट लगा हुआ है।

टेंट के सामने कुछ लोग काम करते नजर आ रहे हैं।

पीछे एक स्टैचू भी बना हुआ है जिसपे टी शर्ट और साइकल का हेलमेट पहनाया गया है।

और सामने की तरफ एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

जो कि नीले और सफेद रंग का चेक शर्ट पहना हुआ है।

इस चित्र में सामने एक व्यक्ति नीले टी शर्ट में नजर आ रहा है।

और पीछे दीवाल नीले रंग की है।

यहाँ पे के कुछ लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं।

ये एक वाहन सफ़ेद रंग की है।

पीछे की तरफ लाल रंग का ई-रिक्शा नजर आ रहा है।

एक व्यक्ति शॉल ओढ़े दिख रहा है।

और दो व्यक्ति खड़े नजर आ रहे हैं।

जो की हरे और लाल रंग का कपड़ा पेहने हुए है।

और हरे और लाल रंग के गुब्बारे भी नजर आ रहे हैं।

यह चित्र एक पैथोलॉजी का है।

सामने की तरफ एक व्यक्ति खड़ा है।

जिसमें कि कई सारे साउंड वगैरा लगे हुए --

पीछे की तरफ एक बाल्टी रखी हुई है जिसका रंग सफेद और नीला है।